जखि रोडअ का पर-तिले साइड हमि एक है-है पेट्रोल पंपन दिखेण लग्युं जो इंडियन आयल कु ना तखि हमि पेट्रोल पंप का अगाड़ी छकि सारा खम्बा खुम्बा दिखेण लग्यां जों पर तारन दिखेण लग्यां।

मा हमि एक दुकानि भितर कु दृश्य दिखेण लग्युं जै भितर मा एक मन्खिन बैठ्यूं और तखि आस पास फण हमि छकि सारा कपड़ा कपड़न दिखेण लग्यां।

टमाटर टुमाटरन शिमला मिर्च और सारा क्रेटों परन रख्यां और सामनि हमि दुकानि पर पोस्टर पास्टरन दिखेण लग्यां लगायां।

तखा फन टेबल टुबलन लग्यां टेबल एंच फुन छकि सारा मन्खि मान्खिन बैठ्यां भ्वाँ फुण छोटु छोटु और तखि बगल फुण छकि सारा कुड़ान दिखेण लग्यां।